कांच दिख रही है लाइटिंग दिख रही है काला आसमान --

कुछ खिड़किया खुली है कुछ लगी हुई है खुला आसमान दिख रहा है।

हरे-भरे पौधे दिख रहे है खुला आसमान दिख रहा है।

बड़े-बड़े पहाड़ टाइप के दिख रहे है हरे-भरे बड़े पेड़-पौधे दिख रहे है छोटी-छोटी घासे दिख रही है खुला आसमान दिख रहा है।

दीवाल दिख रही है दीवाल में दो कैलेंडर दिख रहे है बिजली के बटन बाले बोर्ड दिख रहे है पर्दे दिख रहे है वाइट कलर नीचे शायद टाइल्स दिख --

बहोत सारी टू व्हीलर वाहन दिख रही हैं जिसमें से कुछ बाइक ब्लैक कलर की हैं कुछ रेड कलर की है कुछ ग्रे कलर की है।

बहुत सारी साइकिलें पार्किंग की जगह में लगी है राइट साइड मैदान के बाउंड्री के बाहर झाड़ लगे हुए है बिजली का खंभा लगा हुआ है।